और वहां पर ब्लैक कलर की--

और यह बहोत ही बड़ी हैं और यहां पर शादी के कार्ड इन्विटेशन कार्ड बर्थडे पार्टी के कार्ड --

यह एक बहोत ही बड़ा वाटर टैंक हैं।

और वहां पर बहोत अधिक मात्रा में व्हीकल खड़े--

और यहां पर पेट्रोल डालने के लिए--

यहां पर मिट्टी का समान मिलता है।

ये अधिक समान है यहां पर कुछ छोटे और कुछ बड़े गमले हैं उनका कलर अलग अलग है जैसे रेड --

और यहां पर बहुत ही अधिक से अधिक मात्रा में ऑटो खड़े हैं जिनका कलर अलग अलग है ग्रीन --

जिसके ऊपर शिशा हैं व्हाइट कलर का हैं और इनके पास चेयर्स पडी हैं वेह ब्लैक कलर की हैं और --

और जहां पर बहोत अधिक मात्रा में झूले लगी है।

वहां पर कुछ इंटली पड़ी है।

बहुत अधिक मात्रा में दुकानें दिखाई दे रही हैं।